कहीं सारे सुंदर सुंदर लाइटनिंग और--

मुझे पांच लोग नाचते हुए दिख रहे हैं।

इसमें मुझे दो गाड़ी दिख रहा है एक एल्टो दिख रहा है और ए--

और बहुत सारे डेकोरेशन सामान भी दिख रहा है।

इसमें सर्विस और रेनॉल्ट लिखा हुआ है।

साथी साथ किताब और स्टडी टेबल भी दिख रहा है।

इसमें बच्चे असेंबल हुए हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए और उन्होंने सफेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

और कई तरह के बॉक्सेस और मुझे लग रहा है कि ये बड़े और बच्चों का इनरवियर है खास करके लड़कों का।

लोग अपना मुं टी_वी के ओर किए हुए गेम खेल रहे हैं।

और मुझे बहुत सारे चेयर दिखाई दे रहे है और मुझे दो फैन भी दिखाई दे रहा है।

और मुझे इस गाड़ी के सामने बाइक्स दिखाई दे रहे हैं।

बहुत अच्छे से पालिश किया गया है।

जिसमें बहुत सारे खाने की चीज हैं जैसे कि बिस्किट्स हॉर्लिक्स और मुझे मैगी सब दिखाई दे रहा--